लड़के हैं जो फोटो क्लिक करा हैं जिनमे जिम का सामान रखा हुआ हैं छोटा छोटा सा डंबल नीचे बड़ा सा भी हैं।